अह बढ़ रहे हैं और इसके बगल में एक सरकारी नल लगा हुआ है जिसे लड़का एक चला के--

और इस रोड पे बहुत सारी बाइकें और बहुत सारे लोगों से जाम हुई है।

और इस दुकान के आगे बहुत सारे अह लाल और उम्म लाल और--

और दो यहां टेबल रखीं हैं और एक गुड्डे को कपड़ा पहना के दिखाया गया है।

और यहां पे एक और पटरी है जो कि पटरी बिल्कुल खाली है। ट्रेन अभी इस पे नहीं आया हुआ है।